यहाँ पर एक बोहत बड़ा सा हाल है जहाँ पै बोहत सारी टाइल्स लगी हुई हैं और इसका कलर थोड़ा सिल्वर टाइप का है।

और यहाँ हमें बोहोत सारी डम्बल्स रखे हुए है बोहोत सारी मशीनें रखी हुई है मशीनों का कलर जो है वो लाल जैसा हैं।

पर एक हॉल दिखाई दे रहा है हॉल का जो फर्श है--